ही एक बस स्टैंड है देखिये इधर बहुत बस है आप देख सकते हो जा रही है बस में भी बेठने के लिए जा रहे है ये देखिये --

यहा आप देख सकते हो ये एक पूल है इस ईसपे रेलिंग लगी है और इधर पेड़ है आप देख सकते हो उधर बहुत अच्छा नज़ारा है देखिये रुक के देख रहा है देखिये--

ये देखिये नदी है बोड है ये आप देख सकते है इधर जंगल टाइप का इधर एक फ्लॅट है और ये आप जंगल साइड --

यहा आप देख सकते हो इधर बहोत अछा नज़ारा है इधर पेड़ है इधर पूल है उसके उपर ये रेलिंग है आप देख--

ते हो इसके उपर से और गई है एक आप देख सकते हो उधर पेड़ है बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है आप देख सकते हो इधर बहुत अच्छा लग रहा है।

उग रही है आप देख कार का एंड है इधर एक काँच है कार में से फोटो --